यहां पर एक ग्राउंड बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है। उस ग्राउंड में रेड कलर का कुछ --

कोचिंग करते हुऐ दिख रहे हैं और उसके ठीक सामने सरस्वती जी का फोटो भी लगा --

यह एक बोहोत बड़ा ब्रिज हैं जो कि उस पार से इस पार --

ये एक मकान है। उस मकान में एक फोर व्हीलर दिखाई दे रहा है और उधर से पानी निकालने के लिए प्लास्टिक का पांईप भी दिखाई दे रहा है।